कूद रहे हैं जो वो फिसल पट्टी पे से आ के स्विमिंग पूल में कूद रहे हैं | यहाँ पे एक स्विमिंग पूल बनो हैगो ।

बिजली की बिजली घर है वो बिजली घर।

जहाँ पे एक बिजली को पुरोमण्डल है वो त पुरो जित्ती जे यहां से बिजली वगेरा निकलता है न वो पूर बिजली को वो है।

यहाँ पे जो कॉल सेंटर बने हैं वो कॉल सेंटर सर्विस --

एफ.डी.एफ.सी. बैंक यहाँ है बहुत सारे लोग खड़े है।

और यहाँ में वन मंथ इंटरेस्ट फ्री लिखा हुआ वो तो यहाँ पे इंटरेस्ट फ्री किसी चीज़ का भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा जैसे पहले बैंक लोन लिया तो उसका इंटरेस्ट वन मंथ के लिए फ्री है ।

की बॉडी बैग टांग रहा वो एक कछु पे उस मशीन के ऊपर बैठ के।

तो यहाँ पे भी जो बस खड़ी हैंगी जो भी खटारा सी बस स्टैंड है वो जहाँ पे बहुत गन्दगी हैंगी | खटारा तो नहीं कह सकते मतलब बहुत गन्दगी वाला --

यहाँ पर बहुत से लोग फोटो घींच रहें हैं घूमने आए हैं यहाँ पर पहाड़ी इलाके में।

दाल-चुरा चिप्स रखे हैं वो।

उ तनी घास-फुस खिला रहे हैंगे।